वहांकुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं।

दो तीन बाइक खड़ी हुईदिख रही है।

यहां पर एक आदमी और--

यह ड्राई क्लीनर की दुकान है।

स्नान कर रहे हैं और--

यह पेड़ छोटे और बड़े दिख रहे है।

दो कार नजर आ रही है।

गुरुद्वारा देख रहा हैं।

यहां पर बहुत से गुब्बारे दिख रहे हैं।

कुछ मुर्गे हैं जो लाल रंग के हैं कुछ मुर्गी हैं।

वह एक चर्च है।

जिसका कलर काला है।

उनके हेथ में माइक है।

कुछ छोटे है कुछ बड़े हैं।